सामने आप देख रहे हैं पंडाल सजा हुआ है और यहां पर देखिए गुब्बारे रंग बिरंगे हैं और यहां पर कुछ गुब्बारे --

अ क वो कपड़ा ओढ़ाया गया है और देखिए सामने सरस्वती जी की मूर्ति है और नीचे देखिए उन कैलेंडर है।

इधर थोड़ा बोहोत हरा-हरा घास है और उधर भी जो गोले में घास है।

और यहां पर देखिए जो मैदान है वो मिट्टी रंग का है मैदान और कुछ तरफ हरे घास भी हैं और यहां से देखिए पाइप --

और देखिए इसके अगल-बगल बहोत सारी प्लास्टिक में कुछ रखा गया हैऔर इधर जैसे --

और उधर देखिए हट का झोपड़ी के पीछे भी --

सामने देख रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है और यहां पर एक आदमी है जो गमछा --

हां हाथ रखा हुआ है और आ आंखों में चश्मे पहने हुए हैं।

स्टूल पे प्लस रखा गया है ईसा मसीह का पीछे भी ईसा मसीह --

ए एक खड़ा हुआ है माइक पे बोल रहा है जिन्होंने --

आसमानी रंग का शर्ट और पैंट पहना हुआ है और बगल में भी --

एक आदमी खड़े हैं जो कि कुछ बजा रहे हैं और नीचे देखिए हरे रंग की कार्टन है।

कुछ खाने की टॉफी बिस्किट ये सब रखी गई हैं और यहां पर देखिए फोन पे का --

सामने आप देख रहें हैं लकड़ी का बेड है और इसमें देखिए --

इन्होंने गुलाबी रंग का चार्ट पेपर लिया हुआ है और एक लड़का है वो --

खिड़की लगी हुई है और यहाँ पर देखिए एक औरत है जो कि सफेद रंग का वस्त्र पेहेनी हुई है।

बाजे का रंग है इस रंग किया गया है गुलाबी --

और यहां पर देखिए सभी में विवो विवो लिखा गया है और नीचे उसी का --

और कागज पे भी लिखा गया और यहाँ पे लिखा है जियो फोन --

और यहाँ पर देखिए जो टेबल पर है कंप्यूटर रखा गया है।

के कपड़े की दुकान है और यहाँ पर लिखा है मोंटे कार्लो --

रंग-बिरंगी टी शर्ट रखे गए हैं टी-शर्ट रखे गए हैं और जीन्स भी रखे गए हैं।

आज कपड़े पेहेने हुए हैं और एक आदमी एक औरत खड़ी हुई है और एक लड़की खड़ी हुई है।

और यहाँ पर देखिए सफ़ेद रंग का भी इधर कुछ घर बनाया गया है और इधर कुछ स्टेचू बनाई गई है मूर्ति बनाई गई हैं।

सामने हॉल है और हॉल में ऊपर देखिए यहां पर बैनर लगा हुआ है अ उस पर लिखा है फ्रेशर्स ।

बहुत बड़ी सी और बगल में देखिए तो वो नारंगी रंग और मेहरून रंग की में की गयी रंग की गई बिल्डिंग है।